खाने पीने का स्थान दिखाई दे रहा है।

जिसमें की एक आदमी खाना खाते हुए नजर आ रहा है जिसमें कुछ--

जहां पर गाड़ियों में तेल डाला जाता है।

इस दृश्य में मुझे एक बहोत बड़ा योगा करने का उपकरण दिखाई--

इट पत्थर के बने बॉक्स दिखाई दे रहें हैं।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

उसके आस पास बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई--

इस दृश्य में मुझे एक बहोत बड़ा--

और उसमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है जो की बैठा हुआ--

इस दृश्य में मुझे बहुत सारे लोग दिखाई--

छोटा सा बच्चा भी नजर आ रहा है।

और कुछ बोतले भी दिखाएं दे रही है जोकि खाली बोतलें है।

जिसमें की योगा करने के उपकरण भी दिखाई --